बाजू में लाल कलर की एक बास्केट दिखाई दे रही हैं सफेद कलर का पेपर दिखाई दे रहा है।

यह एक लड़का दिखाई दे रहा है पीछे यीशु मसीह दिखाई दे रहे हैं जो की एक स्तर के अंदर और एक कांच में--

यहा पर बहोत बड़ी नदी दिख रही है और दो झील दिख रही है जो जिस में दो नाव दिख रही है उसमे एक बहोत सारे आदमी है।

दो बस है इधर पे एक ऑरेंज और एक गुलाबी और काले कलर कुछ लोग दिख रहे हैं।